यहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ बैठे हुए --

महिला भी है कुछ पुरुष भी है और उनका सजावट बहुत अच्छा है।